बच्ची देख के लगता है की आराम कर रही है। पेड़ के निचे स्कूल से बाहर--

ये ही तस्वीर एक पार्किंग लोट की है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सारिया गाड़ियां खड़ियां हैं।

बहुत-बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं। यह नहीं समझ में आता कि ये यहाँ पे किसी भगवान की पूजा कर रही हैं या फिर यहाँ पे अपनी शादी के लिए आई हैं।

आसपास की चीजो से प्र प्रतीत होता है कि यह एक नाई की दुकान पे आया है अपने बाल कटवाने।

ऐसे ही जानवरो को ज़ू के अंदर सुरक्षित रखा जाता है बिना किसी नुकसान पहुचाए उन्हें।

पैकेट देख सकते हैं इन्हें किराने की शॉप कहा जाता है। इंडिया में जो हर जगह है।

यह तस्वीर में एक लड़का अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर है। पीछे पूरा जंगल है।

यह तस्वीर में एक गाड़ी खड़ी दिख रही है। इन गाडियों को वेन कहा जाता है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रही चीज को हरमोनियम कहते हैं हरमोनियम के आगे --

ऐसी जगह पे गाड़ी धोई जाती है और उनके रिपेयरिंग की जाती है। यह गाड़ी इस वक़्त होंडा कंपनी की है जिसे दो व्यक्ति मिलकर धो रहे हैं।

यह तस्वीर में आप जिन व्यक्तियों को देख रहे हैं वह इस वक्त संगीत --